यह एक अस्कूल है इस स्कूल मे बहुत सी कांच की खिड़की लगी हुई है।

इसकी छत में कुछ लाइटें भी लगी हुई है दीवार में एक स्लैब भी बनी हुई है जिसके अंदर एक छोटा सा पेड़ और कांच के कप रखे हुए हैं।

और इसकी दीवार में कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं और इसकी दीवार में एक खिड़की भी बनी हुई है।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

ए_टी_एम के बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई है और उनके पास में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

यह एक क्लास रूम है और इस क्लासरूम के अंदर बहुत सी बैंचें रखी हुई हैं।

दो आदमी बाहर खड़े हुए हैं और एक औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी है और इसका गेट कांच से बना हुआ है।

इसमें एक लोहे का जीना भी है और इसके पास में एक दुकान भी है और एक ऑटो भी खड़ा हुआ है।

एक रस्सी भी बंधी हुई है जिस पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

और इसमें कुछ टेबल भी रखी हुई है उनके ऊपर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

यह एक पैलेस है इसके अंदर कुछ फूलों से सजावट की गई है और इसमें एक सोफा भी रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां रखी हुई है।

इसके बाहर गेट पर कुछ फूलों से सजावट की गई है।

यह एक स्कूल है। इस स्कूल का गेट लोहे से बना हुआ है। इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और छत पर एक लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है स्कूल के गेट पर एक कैमरा भी लगा हुआ है और इसके पास में एक छोटा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

यह एक ग्राउंड पार्क है और इस ग्राउंड पार्क के ऊपर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

पेड़ों के पास में कुछ दीवारें भी बनी हुई हैं।

और इसके अंदर कांच की खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक ऑफिस रूम है और इसके अंदर बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है जिन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और इसमें एक गुड्डे का हंडोला भी लगा हुआ है।

और इसके अंदर कुछ मूर्ति भी है। इनके गलों में फूलों से माला भी है।